अरे वाह यार कितना बढ़िया घर है और इसके अंदर --

और ये साथ जो हैं ये आदमी खड़े हैं। ये इसे लेने आए हैं। नए रिक्शे को।

काफी अच्छी कंपनी है भाई गोल्ड फ्लेश की बहुत अच्छी वो एस.के.आर. --

और ये इसमें कीचड़ में घूम रहा है कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है भाई ये --

कितनी क्यूटी लग रही है यार ये हरी बाली यार कितनी अच्छी लग रही है यार और ये पिंजरे में बंद है उड़ नहीं सकती हैं इस टेम । बोहोत अच्छी लगेंगी उड़ती हुई तो यार ये चिड़ियां।

और इन्होंने जिम खोली है इसमें सभी लोग आए और अपनी-अपनी बॉडी बनाए बहुत अच्छा --

अरे वाह यार भाई ये तो यार भाई किताबों की दुकान है और भाई दुकान का नाम है। सत्यम बुक डिपो --

यहा पर भई सभी प्रकार की किताबें मिल जाती है। कोई से भी कॉलेज की पेन पेंसिल डस्टर वगेरा सभी चीज मिलती हैं भाई।

बहुत अच्छी लग रही है यार कलर करा हुवा सीमेंट से बनी हुई मूर्ति है भाई ये। बोहोत सुंदर लग रही है यार --

अरे वाह यार भाई यह तो यार भाई स्कूल है। काफी बड़ा स्कूल है यार भाई।

अरे वाह यार भाई कितना बड़ा यार गार्डन है ओ भाई इसके पास तो यार ये भी है यार सर्विस सेंटर यार कितना बड़ा यार हॉल है यार कितना बढ़िया करके यार ये बिल्डिंग बनी हुई है इसमें पता नहीं यार कोई मशीन मशीन फैक्ट्री वगैरह लगी हुई है।